फोटो घिचा रहा है पक्का का मकान है तो रात का समय है बहुत ही अच्छा दिख रहा है।

ताला भी लगा हुआ और नीचे में तीन चार सीढ़ी भी बना हुआ है।

दोपहर का समय उसके आगे में पक्का का मकान और पेड़-पौधे दिख-- और भारत का एक ठो झंडा दिख रहा --

और उसके बगल में छोटा-छोटा घास देख रहा है और पक्का का सड़क है और उसके आगे में एक ठोस --

मुझे इस तस्वीर में बहुत अच्छा काला अंगूर दिख रहा है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है एक ठो ट्रे में है और --

अगवार जैसे दिख रहा दोपहर का समय --

मुझे इस तस्वीर में एक व्यक्ति फोटो खींचा रहे है और एक ठो बहुत ही बड़ा बैनर में रॉकी भाई का फोटो दिख रहा है बाल दाढ़ी का एक ठो सैलून है नीचे में टाइल्स लगा हुआ है टाइल्स बहुत ही अच्छा दिख रहा है ब्लैक कलर का--

मुझे इस तस्वीर में बहुत बड़ा मॉल दिख रहा है और उसके आगे में बहुत सारे आदमी चल रहे और एक ठो पक्का का मकान है पक्का का मकान बहुत ही सुन्दर दिख रहा है नीचे में टाइल्स लगा हुआ है।

तलाब जैसे दिख रहे है और उसके आगे में एक ठो एक मंदिर भी है दोपहर का समय है और ड्रॉ चढ़ रहे ऊपर में उतार पिट है।

मुझे इस तस्वीर बहुत सारे जमीन दिख रही जमीन बहुत ही अच्छा दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक केक का दुकान दिख रहा द केक स्टॉप लिखाया हुआ है दोपहर का समय केक बहुत ही सुन्दर दिख रहे और कई प्रकार के केक हैं ।

दोपहर का समय एक महिला केक खरीद रहे और पुरुष दे --